इस स्टेशनरी में बहोत सारी बुक्स हैं।

मंदिर सफेद रंग का पूता हुआ हैं।

इस पिक्चर में एक पुल नजर आ रहा है।

पीछे कुछ पहा पेड़ भी नजर आ रहे है।

एक झूला लगा हुआ हैं जिसपे एक लड़की झूल रही हैं।

इस पिक्चर में एक पंचर की दुकान नजर आ रही है।